और किताबें है हाथ में पेन है और एक बोतल है.

यह अ अ ब बहुत सारे बोतल्स पड़े हैं टेबल पे।

और एक आदमी बल्ब के नीचे कुछ काम कर रहा है और वहां से भी बहुत सारे पानी अ पानी की बोतल्स हैं और बुक किताब--

अ चार गाड़ियां हैं यहां पे एक सफेद रंग की गाड़ी है और इसके पीछे से भी एक गाड़ी है जो सफेद रंग की है।

यह जिम है एक अ बंदी है बंदा जिम में है।

यह कपड़ों की दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े बेचे जा रहे हैं ऊपर तीन फैन लगाए हुए हैं।

हम्म पीछे भी बहुत सारे लड़के हैं जो पत्थरों में बैठे हुए हैं कुछ औरतें भी नजर आ रही है।

कुर्सियों के पास में एक अ बड़ा सा बैनर है।

यह एक मैदान है जहां पूरी पु पूरी हरियाली है और दूर से एक अ बिल्डिंग दिख रही है बड़ी बिल्डिंग --

यह एक मंदिर है जिसके जिसके बाहर बहुत से लोग हैं।

यह एक होटल है जिसमें टेबल कुर्सी और एक जगह पे सोफा भी है एक औरत खड़ी है।

पीछे से भी मंदिर लग रहा है या जो भी है पता नहीं और साइड में पेड़ है।

यह सारा बंद है जंगल करके हुआ है और साइड छोटे-छोटे पेड़ भी हैं जिस पे कलर करके है।

इस कमरे में तीन आदमी हैं और साइड में एक अलमारी है जिसमें ड डब्बे हैं एक फैन है बिजली लाइट चल रही है।

और इसमें टेबल कुर्सी है टेबल पे गिलास है और वहां से--

ये बहुत से लोग बैठे हुए हैं सबके सिर पर सफेद कलर की टोपी है।

यह बेड है बेड पे अ एक कंबल है।

और दूर से एक लड़का साइकिल चला रहा है।

एक आदमी को मास्क लगा के है और इसको ऑक्सीजन के तीन सिलेंडर्स हैं।

पीछे और एक आटो है उसके पीछे एक सफेद कलर की गाड़ी--

एक साइड में दो लड़के चल रहे हैं एक लड़का दूसरे साइड में चल रहा है एक दीवार को कुछ पेंटिंग बना के है।

और हर एक अह जगह जैसे बंधी हुई है और एक महिला चल रही है --

अ यह बहुत अच्छी जगह है जहां पर छोटे-छोटे गमले हैं जिसमें फूल उगे हैं।